ये छोटा सा तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है अ ब ये तार के तार से इसका पिंजरा बना हुआ है।

और फ अ और अगल बगल हरे पेड़ पौंधे है और बादल नीला और सफेद है।

अह सीढ़िया बनी हुई है अगल बगल हरे पेड़पौधे है और अह बादल नीला और सफ़ेद है।

एक बस सफेद लाल और एक सफेद संतरे एमे बस है और अगल-बगल हरे पेड़-पौधे हैं और सामने एक बस स्टॉप बना हुआ है और बादल नीला है।

गार्डन है इस मैदान में हरे घास जमे हुए हैं सोह पत्तियां फूल लगी हुई है अगल-बगल हरे पेड़ पौधे हैं और बादल नीला और सफेद है।

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय है जिस विद्यालय के रास्ता बना हुआ है आने जाने का उसके बगल में एक मैदान है।

और हर हरे-हरे घास जमे हुए हैं अगल-बगल हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बादल सफेद और नीला है।

इ स्टेज बनी हुई है जो स्टेज में एक सोफ़ा रखा हुआ है और फूलो और झूले लगे हुए हैं और नीचे लाल कलर का फिल्ट बिछा हुआ है।